यहाँ पर मुझे काफी सुंदर सा और बहुत ही ब्यूटीफुल एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

स्टेशन की जो दीवाल है ये व्हाइट कलर रेड कलर से पेन्ट है यहां पे मुझे काफी लोग भी दिखाई दे रहे है पटरी पर अभी कोई ट्रेन नहीं है लेकिन स्टेशन काफी साफ़-सुथरा और क्लीन है।

रेलवे स्टेशन के ऊपर दूर मुझे एक ओवर ब्रिज दिखाई दे रहा है जिस पे चढ़ कर यहाँ से वहाँ आया आसानी से आया जा सकता है रेलवे स्टेशन के है दोनों साइड जो है ट्रेन खड़ी हो सकती है।

यहाँ मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जो कि काफीअच्छा लग रहा है रेस्टोरेंट का कलर जो वॉल पर व्हाइट है और एक वॉल को डेकोरेट किया गया है डिजाइंस के साथ ---

उनके जस्ट पीछे हमें एक लाइट का पोल दिख रहा है और ऊपर कुछ लाइट के वायर दिखाई दे रही है ।

नीचे जो है एक आसन रखा गया है मंदिर काफी खूबसूरत लग रहा है मूर्तियों के साथ।

बफैलो के साइड में एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग या घर मुझे दिखाई दे रहा है।

और बगल में एक मुझे हरा-भरा सा जो है पेड़ सा कुछ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे काफी सारे बड़े-बड़े पत्थर भी दिखाई दे रहें हैं।

यहाँ सामने मुझे खूबसूरत सी प्लेट दिख रही है एक स्पून है और काटा --

यहां मुझे एक बहुत बड़ी-सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के आस-पास हरे-भरे पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ के साइड में मुझे काफी सारे ऑटो बाईक और लोग जो है दिखाई दे रहे --